इस इमेज मे हमें एक टीचर पढ़ाते हुए दिख रहें हैं।

और यहां पर बहोत सारे स्टूडेंट --

बहोत दूर की तरफ देखें तो सामने से पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें छै लड़के एक साथ खड़े हुए दिख रहे हैं।

यहां पर बाहर की तरफ एक मूर्ति भी खड़ी हुई दिख रही है।

एक शर्ट है उस पर प्रेस करता हुआ दिख रहा है।

यहां पर हमें एक व्यक्ति टेबल के--

जिसमें की लोहे के पिलर एक साथ जुड़े हुए रखे हैं।

य पानी गिरता हुआ दिख रहा है।

और यहां एक मोटर भी लगी हुईं हैं।

एक रेस्टोरेंट का ईमेज दिखाई दे रहा है।

स्लेटी कलर के परदे लगे हुए हैं।

और यहाँ गोल चेयर पर वाइट कुर्सियाँ बहुत सारी लगी हुई है।

जिसमें कि बाहर की तरफ कुछ महिलाएं खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और दो महिलाएं यहां पर बात कर रही हैं।

एक पैंपलेट भी लगा दिख रहा है जिस पे ठंडी बीयर लिखा हुआ है।

तीन से चार एरोप्लेन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक छोटी सी थ्री व्हीलर गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

पूजा करती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर स्काई ब्लू और वाइट कलर के।

क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स भी रखे हुए दिख रहे है।

और प्लास्टिक का सामान भी यहां रखा हुआ है।

और नीचे फिनायल्स की बॉटल्स रखी हुई है।

उसके आगे हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

जो की लोहे का सामान दिखाई दे रहा है।

इस घर की टाइल्स पर पानी पड़ा हुआ है और इसके दरवाजे खुले हुए हैं।

आपका हार्दिक स्वागत है ऐसा यहां लिखा हुआ है और यहां पर ए_टी_एम में अंदर से लॉक लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर क्लास में वाइट कलर की बेंच --

और यह बच्चे ड्रॉइंग करते हुए--

और यहां पर एक कॉर्नर टेबल भी रखा हुआ है।

यहां कथक नृत्य या भरतनाट्यम नृत्य करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

यह एक खेत की पिक्चर है यहां पर एक खेत--

यहाँ पर दरवाज़े खुले हैं और इन दरवज़ों पर प्राणी संरक्षण सप्ताह लिखा है।

यहां पर हमें एक खूबसूरत सा नजारा दिख रहा है।